और यहां पे खजूर के पेड़ भी हैं।

प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है।

और यहां पे एक जाली लगी हुई है और तुम्हारी ।

रूम जैसा है और सोफे लगे हुए है।